इसमें कोने में एक काला डब्बा रखा हुआ है बड़ा सा।

इनमें से एक व्यक्ति ने मास्क लगाया हुआ है और वह अपना फोन चला रहा है।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

यह चित्र किसी शादी के मंडप का है।